ये एक नित्य कलाकार हैं जहां पर नित्य कर रही हैं काफी लड़कियां और व्यक्ति--

यह ए_सी वेसी यहाँ लगा है एक बिल्डिंग है पाँच इमारत का है।